यह एक झरना है बहोत अच्छी दिखाई दे रही है और इसी तरह की हम लोग के गांव में भी झरना नहीं पता हैं कहाँ की है लेकिन बहोत अच्छी हैं।

सभी प्रकार के सामन यहाँ मिलती है इस दुकान में जो की अभी बंद है और सामने गाड़ी पार्किंग करने के लिए सुविधा है।

एन. टी. पी. सी. कोरबा पे है जोकि एक गार्डन है।

जो की बाइक वाईक बनाया जाता है और एक सीढ़ी नुमा--

यह एक मेडिकल शॉप है जो की सभी तरह का दवाई और राशन सामान मिलता है यहाँ अउ तेल सब कुछ मिलता है यहाँ--